पहड़ो का फोटो है।

और टेबलों पे कुछ किताबे भी रखी हुईं हैं।

लोन दिखाया जा रहा है

ये लोहे के स्टील के--

तोते का रंग हरा और ग्रे हैं।

जा रहा है।

इस फोटो में एक लड़का नाव पे खड़ा हुआ है ।

जो की पुराने जमाने का ब्रिज --

और ये एच_डी_एफ_सी के बाहर का फोटो है।

मटर और गोभी रखी देखी जा सकती है।

जो की पूरी पत्थर से बनाई हुई दिख रही है।